जिस जगह काली गाड़ी पार्क हुई है।

बीचों बीच गोल्डन रंग का कुछ मूर्ति सा रखा हुआ है।

इस फोटो में किसी मोबाइल रिपेयर शॉप का दुकान दिखाया गया है।

उसके पीछे एक आयरन का बाउंड्री है जो की नीला रंग का है।

पीछे का सीनरी में पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस फोटो में हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

इस रेस्टोरेंट के टेबल के आगे एक बियर रखा हुआ है।

नदी के किनारो में बड़े बड़े पत्थर भी हैं।

ब्रिज का सीलिंग हल्के से हरे रंग का है और बाकी बाउंड्री नीला रंग का है।

फोटो में एक महिला कुछ भाषण दे रही है।

इस फोटो में बिल्डिंग्स दिखाए गए है सबसे बीच वाले बिल्डिंग के ऊपर होटल लिखा हुआ है।

बिल्डिंग का जो सिलिंग है वो टीन से बनाया गया है।

एक पी_एस पाइप में कॉल आफ ड्यूटी चल रहा है यह जो रूम है ये व्हाइट रंग का है।

लेफ्ट साइड दो लेटर बेस्ट चेयर्स जिसका रंग ब्राउन है।

राइट साइड फोटो में फीलिंग हो रहा है।

ट्रेन नीले रंग का है और इंडियन रेलवेज़ लाल रंग से लिखा गया है।

रेलवे ट्रैक के आगे का नजारा हरियाली ही हरियाली से भरा हुआ है।

घर के आगे का एक पेड़ है जिसका बाउंड्री ईट से दी गई है।

पिक्चर में ए_टी_एम मशीन के आगे का व्यू दिखाया गया है।

यहाँ तीन चार लोग हैं बहोत सी बाइक खड़ी हुई हैं लाइन से।

यह पिक्चर में दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं।

उसके आगे एक झंडा है अपने इंडियन फ्लैग का।

पिक्चर एक हार्डवेयर शॉप का है।

राइट साइड के सेल्फ में पंखे बल्ब्स वगैरा बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं।

उसके लेफ्ट साइड एक सिलेंडर बर्तन रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में छोटे बच्चे भी दिखाए गए हैं जिनका चेहरा ब्लर्र है।

दुकान की लेफ्ट साइड के वॉल में ओम का सिंबल भी है।

रेस्टोरेंट रूम का वॉल्स ग्रे रंग का और राइट साइड बहुत सी लाइटिंग लगाई हुई है इस रेस्टोरेंट में टेबल एंड चेयर्स भी हैं।

इसके आगे एक छोटा सा कॉटेज बनाया गया है बैंबू द्वारा।

स्टेज में कई सी लड़कियां अपना डांस प्रस्तुत कर रही है।

पिक्चर में एक छोटा सा बिल्डिंग दिखाया गया है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट का व्यू दिखाया गया है।

नीचे में एक ग्रीन कलर का मैंट बिछाया गया है।